और यहाँ पे पोस्टर्स के बगल में उ उ ग्रिल भी है ये बहुत अच्छा बैंक है जिसमें हम लोग पैसा भी निकाल सकते हैं अन या त काम भी कर सक--

त्रिशूल लग चुका है जो महादेव का त्रिशूल है यहाँ पर सारे ऑटो बहुत सारे हम्म जगह है जो बहुत खुला मढ़िया है यहाँ पे बहुत अच्छे बिल्डिंग भी है।

ऐसा है जो मतलब इसके बाहर से कांच लग चुका है। ये यह पोस्टर भी लग चुका है| सेवंथ हेवन का ये बाहर कांच है बहुत सारे साइकिल भी हैं।

इसके अंदर बहुत हम्म इसके अंदर बहुत सारे वोट्स भी हैं यहाँ पर साइकिल बहुत अनगिनित हैं।

बस स्टेशन है इसके चारो तरफ वृक्ष भी है यहाँ पर कुर्सी बैठने के लिए भी है यह चारो तरफ वृक्ष चारो तरफ बस --

और बहोत आ चारो तरफ कुर्सी भी है यहाँ पर सवारी भी खड़े हुए है बहोत सारे लोग भी यहाँ पर यहाँ पे एक रिक्शा भी है।